और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लोग भी जाते हैं सभी आदमी जाते हैं उसके बाद दर्शन करते है उसके बाद प्रसाद चढ़ाते हैं।

उसमे कई तरह का लड़का-लड़कियाँ पढ़ रहे है।